इस फोटो में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रही है इस पेट्रोल पंप पे एक बाइक खड़ी है।

और भी रोड पे गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

यह एक सत्संग भवन का फोटो है।

के धर्मशाला का फोटो है यहां बहुत सारी बाहर गाड़ियां खड़ी हैं।

काले रंग की गेट भीं दिखाई दे रहीं हैं।

यहां पे पहाड़ और पाई पेड़ दिखाई दे रहे हैं आसमान में बादल भी छाया हुआ हैं।